पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के नीचे एक दुकान भी लगी हुई है दुकान में बहुत सारे समान भी दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग में बाहर एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग वाइट रेड कलर के पेंट से पुती हुई है बिल्डिंग के बाहर बहोत सारी कार और बाइक्स भी दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग के बाहर और एक सफ़िल भी उठी हुई है।